एक बुलेट की एजेंसी दिखाई दे रही है।

ये सामने पिज़्ज़ा वे दिखाई दे रहा है।

व व्हाइट कलर से लिखा हुआ है।

डी_जे पर तीन स्पीकर की पेटियां--

सफरोन बिरयानी वाला दिखाई--

कुछ लोग कॅम्प्यूटर पर काम कर रहें हैं।

यहां पर स्टडी विजा वर्क परमिट --

दे रहे हैं और टरक में मिट्टी--

ब्लू कलर की ड्रेसे बच्चों ने--

ऐ कुछ राइडें भी लगाई--

झील का पानी बिल्कुल ब्लैक दिखाई--